इस तस्वीर में सामने चर्च का सीन दिखाई दे रहा है।

बहुत सारे पेड़ पौधे लगाए हुए हैं बड़े से छोटे ले के खेत खलियान भी दिखाई दे रहा है।

दिन का समय है नीला आसमान दिखाई दे रहा है।

बगल में बेकर्स भी है यहां पे एक लड़का बैठा हुआ है जो की येलो कलर का शर्ट पहना है जिसका फेस नहीं दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में यहां पे सारे लोग योगा कर रहे है सारे जेंट्स हैं।

ऐसा लग रहा है सुबह सुबह का समय है फ्रेश हवा चल रहा होगा यहां पे।

सामने में बहुत सारे लोग हैं जो कि वॉक कर रहे हैं और कुछ लोग खेल रहे हैं कूद रहे हैं।

बड़ा सा पेड़ लगाया गया है दिन का समय नीला आसमान दिखाई दे रहा--

इस तस्वीर में सामने डाकघर का दिखाया गया है यहां पे एक आदमी बे बैठा है जिसका आधा चेहरा दिखाई दे रहा है।

पर में लिखा हुआ है डिप्ट ऑफ पोस्ट इंडिया और लेटर बॉक्स लिखा भी हुआ है और क्लियरनेस --

दीवाल का कलर उजला कलर का है और नीचे काला काला दिखाई दे रहा हैं।

यह बिल्डिंग का कलर जो है वो कॉफी कलर का है और क्रीम वाइट कलर में है।

तस्वीर में सामने एक जनरल स्टोर दिखाई दे रहा है।

बहोत सारे बिस्किट्स ब्राउनी बर्ड्स ओट्स वगैरा रखें हुए हैं।

सामने में इधर सामान ले रहे हैं दो लोग बाप बेटी है शायद तो बॉटल्स वगैरा रखा हुआ है झाड़ू पोछा--

इस तस्वीर में सामने बहुत सारे लोग हैं जो की गाना बजाना कर रहे हैं और कुछ लोग खड़े हैं कुछ लोग देख रहे हैं कुछ लोग बैठे हुए।

दो लेडिसे खड़ी है एक येलो कलर का साड़ी पहनी और एक छोटी बच्ची है जो दोनों के फेस बल ब्लर कर दिया गया है।

तालाब में पेड़ पौधे की परछाई भी आ रही है और बड़ा सा बाउंड्री भी दिखाई दे रहा है।

बड़ा बड़ा पेड़ पौधा दिखाई दे रहा है नीला आसमान दिखाई दे रहा है दिन का समय हो रहा है।

सेट का टाइम हो रहा है बहोत सारे पेड़ पौधे लगाए हुए हैं।

शाम का समय है और एक सामने बहुत बड़ा सा टावर दिखाई दे रहा है और सामने में एक घर भी है।

इसमें सिरप रखे गये हैं कुछ टैबलेट रखे हुए है।

प्रोटींस के भी कुछ कुछ सामान रखे गए हैं यहां पे वाइट कलर का दिवाल है।

मोबाइल के फोटो से लगाए गए हैं नीचे में शटर ओपन है।

इस तस्वीर में सामने कार वॉशिंग सेंटर दिखाई दे रहा है यहां पे कार वॉश भी हो रहा है।

इस तस्वीर में सामने एक बड़ा सा बोर्ड टांगा गया है जिसपे लिखा हुआ है अराध्या डिजिटल एवं मोबाइल एक्सेसरीज ।

पूरा ऑरेंज कलर का यहां पे थीम है डेकोरेशन का।

इस तस्वीर में साथ एक रूम का सीन दिखाई दे रहा है यहां पे बहुत सारे बाल्टियां और बॉक्सेस और बोरे रखे हुए हैं जो कि सीमेंट पेंट्स की हैं अलग अलग कलर में--

सामने तीन डब्बे रखे गए हैं जिसपे लिखा है ईगल बॉस और बगल में और डब्बे रखे गए हैं।

इस तस्वीर में रेस्टोरेंट का सीन दिखाई दे रहा है जहां पे सामने टेबल चेयर लगाया गया हैं येलो कलर का टेबल हैं।

चार ठे ब्राउन कलर का बिछाया हुआ है जिसपे खाना खाते हैं लोग।

बड़े बड़े दुकान बनाए गए हैं बिल्डिंग्स बनाए गए है दिन का समय है नीला आसमान दिखाई दे रहा है और पेड़ पौधे --

दो लोग बैठ के काम कर रहे हैं टायर वायर रखा हुआ है और एक कुर्सी में रखा गया मिट्टी का घर भी है।

इस तस्वीर में सामने बड़ा सा बोर्ड टांगा गया है जिस पे लिखा हुआ है महिंद्रा जो कि रेड और व्हाइट कलर में है और उस पे लिखा हुआ है लोहरदगा ऑटो मोटिव एंड एक्स_टी ।

पिंक कलर के नेट से और कुछ आर्टिफिशियल फ्लावर से डेकोरेट किए गए है माले से--